बेंचेस और टेबल रखी हुई है। उस पार्क में एक लेडिस --

मुझे इस चित्र में एक शॉप नजर आ रही है उस शॉप में--

मुझे इस चित्र में एक सड़क नज़र आ रही हैं।

मुझे इस चित्र में एक गैरेज नजर आ रहा है।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

मुझे इस चित्र में एक सैलून की दुकान नजर आ रही है जोकि बहोत स्टाइलिश है।

एक सफेद कलर की बतक भी दिख रही है।

एक रूम नज़र आ रहा है उस रूम मे एक--

उस जू में हिरणों का एक समूह पानी पीते हुए नजर आ रहा है।